कैसा जगह है क्या हैं करके--

ये तो कोई होटल ओटल लग रहा है या किसी का शादी वादी लग रहा है मछली वो तलते है ना पकोड़ा वकोडा तल के देते है ऐसा बना रहे है लग रहा है थाली मे--

और -और एकदम अच्छा लग रहा है और देखने भी जगह अम जाके देखता हूँ कभी --

एक ठो कोई मछली - वचलि का दुकान है कितना बड़ा - बड़ा मछली है अच्छा भी लग रहा है आ ह पूरा ह देखने में बहुत बढ़िया जगह लग रहा है।

अरे बाप रे कितना बड़ा पहाड़- ओहाड़ है यार अच्छा दिख रहा है जाना पड़ेगा कभी यहाँ पे ना फोटो ओटो खिचवाने के लिए जाना पड़ेगा --

पार्क अउ वॉलीबॉल ग्राउंड है कितना छो हम्म अच्छा जगह पे है यहाँ पर ना पूरा घास हरा -हरा है यार।

ये तो कोई पहाड़ वहाड़ वाला इलाका है यार और कितना मस्त फोटो आया है पेड़-पौधे बहोत हरे-भरे दिख रहै है और बहोत अच्छे--

इतना बड़ा खंडर है पुराना खंडर लग रहा हैदेख लो काई से पूरा हरा-भरा हैं इसको तोड़ ओड़ दिया भी है फेकाया होगा।

ये तो कोई पार्टी ऊटी का लग रहा है किसी का बड्डे पार्टी है या सादी वादी --